और यहां अंधेरा सा हो रहा है।

यह एक पहाड़ है पहाड़ के पास में एक नदी जा रही है।

यह एक कपड़े की दुकान है।

ये ऊपर का फ्रंट है सामने का इसपे एक विंडो लगी है।

के इधर साइड में कुछ गट्टे रखे हुए है सामने दुकान पे कुछ बैग वैग टंगे हुए है।

यह एक चर्च है। चर्च केस पास में पा चार पांच लोग बै --

स्टैंड के पास में ए_टी_एम भी है और एक रोडवेज़ बस भी जा रही है।

रोड के पास में रिक्शा जा रही है और कुछ बाइके खड़ी हुई हैं।

यह एक ऑफिस है। इसमें एक सामने की विंडो है। सोफे हैं।

यह एक पानी का जहाज है।

यह एक फर्नीचर का शोरूम है।

यह एक वित्त कॉलेज है इसमें लड़कियों को डांस सिखाया जाता है।